और सामने ही उसी के सामने एक कार पार्क किया गया है।

पिंक कलर का गेट है पिंक कलर का बाउंड्री है और सामने में ही ग्रीन कलर का बोर्ड है जहां पे शेर वाले बने हुए हैं वो तीन--

और सड़क के किनारे ज़ेबरा क्रॉसिंग बना हुआ है ।

पब्लिक खड़े हैं और बहोत हरे भरे पेड़ है ढेर सारे।

उपर सीलिंग पर बैलून और पर्दा से सजाया हुआ है और साइड साइड पूरा टेंट वाला लगा हुआ है।

एक छोटा सा तालाब टाइप का है और ढेर सारे छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े हैं जो पहाड़ पर से टूटे।

एक ही बांध कर ढेर सारे कपड़े पर पसारे हुए हैं।

ये पिक्चर एक चर्ज का है जहां फादर बाहर है और फादर के बगल में एक जेंट्स खड़े और उनके सामने एक झंडा लगा हुआ है।

ये पिक्चर एक होटल के टेबल का है यहां चार लोग बैठकर अभी खाना खाए हैं बिरयानी और सॉलिड है।

तीन प्लेट में अभी भी बिरयानी बची हुई है और चौथी प्लेट वाली खत्म हो गई है।

ये चित्र एक बिल्डिंग के सामने वाले गार्डेन का है जहां एक आदमी झाड़ू लगा रहा है सूखे पत्ते साफ कर रहा है।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

एक ने धोती और यलो कलर का शर्ट पहना हुआ और एक ने ब्लू और ब्लैक में प्रिंटेड शर्ट पहनी हुई है।

और बहुत सारे ग्रीन बड़े बड़े पौधे भी और एक बहुत बड़ा सा पेड़ है जिसमें व्हाइट कलर का पेंट मारा हुआ है।